गमला में एक पौधे है एक से अधिक पौधे हैं बगल में--

किराना दुकान है विकास जूस कॉर्नर के नाम की दुकान है वो बगल में रोड पे--

बहोत छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चें हे जो--

दो आद एक आदमी के बैग टंगा हुआ है नुआ चूआ का कुर्ता पैजामा पहना हुआ है दूसरे आदमी ने येलो कल--

ब्लू कलर की टूटी है एंड एक रेड कलर की टूटी है बगल में एक कुर्सी है जहां पे एक--

यहां पे योगा किया जाता है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं जो--

आदमी योगा करते हुए दिखे हैं और दो व्यक्ति वहां पे बैठे हुए हैं जो काफी बूढ़े हैं वहां पे बगल में बहोत सारे वृक्ष में लगे हैं पेड़ पौधे लगे हैं।

यहां पर मशीन है मशीन के ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा ओडा है मशीन के पीछे बहुत सारी चीजें गिरे है बाहर से रोशनी आती है और इधर भी मशीनें --